इसके नीचे की और दीवार क्रीम कलर और यहाँ काच की एक कुछ लगा और साइड में--

में कुछ लड़किया दिख लक लकड़ियाँ दिखाई दे रही है जहा पर आगे की ओर और भी कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।